साइड में दीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर पैन कार्ड जागरूकता--

ग्रीन कलर की टिन लगी हुई है और तस साइड में --

अंदर रैक बने हुए हैं जिनमें कुछ समान --

दिख रहे हैं साथ में एक आदमी दिख रहा है और--

बाहर दीवाल का कलर सफेद है जिसमें ऊपर लाइट लगी है।

सामने एक मंदिर दिख रहा है जिसमें रंगीन कलर की चोटी बनी हुई है और सामने --

ऊपर सफेद तीला काला आसमान दिख रहा है और सामने जमीन --

सामने एक गेट देख रहा है जिसमें नीला अक पीला और काला --.

उग गेट लगा हुआ है ऊपर एक --

नीला पोस्टर लगा है जिस पर एस_टी_ एस से --

सामने बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं जो --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो पिंक कलर की है।

पीछे बहुत से पेड़ दिख रहे है साइड में एक घर दिख रहा है।

सामने एक क्लास रूम दिख रही है जिसमें बहोत सारे बच्चे --

बहोत सारी बुकें दिख रहे हैं और बैग रखे हुए हैं पीछे दीवालों पर सफेद कलर की --

सफेद कलर के जूते पहने हैं नीचे का फर्स --

दूर एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है ऊपर सफेद आसमान --

ऊपर एक पोस्टर लगा है जिसमें बिहार वाटर्स लिखा है।

ऊपर काला आसमान दिख रहा है।

इसमें पुलिस थाना कोटवा पूर्व चंपारण लिखा हुआ है।

ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें एक पंखा दिख रहा है।

पीछे बहोत सारे रास्ते बने हुए हैं और--

और कुछ ट्रेक ट्रक दिख रहा है।

इसमें गूप्ता सोलर इलेक्ट्रोक मोबाइल लिखा हुआ है और नीचे गुप्ता सोलर इल इलेक्ट्रॉनिक हाउस लिखा है।

एक बाथरूम में गुब्बारे दिख रहे हैं ऊपर छत सफेद कलर की है।

बंधन बैंक लिखा हुआ है और एक ये बंधन बैंक ए_टी_एम लिखा है।

सामने एक घर दिख रहा है।

जो नीले कलर का है जिस पर एक महिला खड़ी हुई है पीछे एक --

और साइड में एक लाल ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

लाल कलर का है और थ्रिशर ऑरेंज कलर की दिख रही हैं।

और बहोत सा सामान दिख रहा है।

जिसके ऊपर पत्थर ज रखे हैं जिन पर एक बड़ा कछुआ बैठा हुआ है।